इसमें बहुत सारी कफे टंगे हुए हैं जालियों पर।

साइड में पक्की रोड भी दिखाई दे रही है।

जमीन पर एक डस्टबिन भी रखा हुआ है।

आसपास सामने कमरे बने दिखाई दे रहे हैं।

इसमें एक बहुत सारी मशीने लगी दिखाई दे रही हैं।

ऊपर की तरफ लाइटे भी लगी दिखाई दे रही हैं।

इसमें नेट बहुत बड़ी सी बिछी दिखाई दे रही है।

इसमें दोनों तरफ बहोत बड़ी सी बिल्डिंग बनी हुई है।

बहोत सारी पूजा की सामग्री भी रखी दिखाई दे रही है।

ये वॉल थर्माकोल के भी डब्बे रखे दिखाई दे रहे हैं।

एक मेट्रो आती दिखाई दे रही है।

पेट्रोल पंप में बहोत ज्यादा भीड़ लोगों की लगी दिखाई दे रही है।

आगे वान एक आदमी बाइक लेकर खड़ा दिखाई दे रहा है।

आने अंदर की तरफ बड़ा सा हरि ओम मंदिर बना हुआ है।

सामने एक गेट बना हुआ है जिस पर उदय भवन लिखा हुआ है।

सामने एक बड़ी सी बिल्डिंग है जिसमें बहुत सारे डंडे लगे हुए हैं।

नीचे एक झोपड़ा भी बड़ा सा बना हुआ है।

पास बड़े बड़े पेड़ भी लगे दिखाई दे रहे हैं।

सामने वॉल बहुत बड़े बड़े स्लाइडर लगे हुए हैं।

मंदिर में सामने एक घंटा लटका हुआ है।

बहोत भीड़ इकट्ठा हुई हुई दिखाई दे रही है।

सामने एक चारपाई पर आदमी ढोलक लेकर बैठा दिखाई दे रहा है।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

सामने एक बड़ा सा बैठने वाला हॉल बना हुआ है।

स्कूटी के ऊपर एक हेल्मेट रखा दिखाई दे रहा है।

सामने अंबेडकल पार्क है बहोत बड़ा सा।